लग रहा है मेरे को टैक्सी भी दिखाई दे रही है वहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहाँ बहुत सारे लाइटे भी शहर शहर टाइप का लग रहा है बहुत सारी ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पे बहुत सारी मोटोरसाइकिल भी दिख रही है वहाँ पर एक --

ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर कुछ और साड़ी आदमी दिख रहे है वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है बोहोत सारी दुकानें दिख रही है वहाँ पर कोई चाहे बैंक हो वहाँ पर मुझे कुछ बोहोत सारी स्कूटरें भी दिख रही है वह व्हाइट कलर की दिख री स्कूटर में कई प्रकार का फील्ड दिखाई बुलेट गाड़ी भी दिख रही छड़ी भी --